एक ऐसा म खुरदुरा हुआ मैदान है जहाँ पे चारो तरफ भूर-भूरी मिट्टी ही मिट्टी है और इसमें कंकड़-पत्थर भी है दूर-दूर हल्के-हल्के पेड़-पौधे दिख रहे है और यहाँ पर एक ट्रक है जहाँ पर समान लगाया जाता है दूर-दूर गाड़ियां भी खड़ी हैं।